रखे हुए दिखाई दे रहे है और उसके सामने बड़े बड़े कांच लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बैंक के बाहर एक बोर्ड पर एच_डी_एफ_सी बैंक लिखा हुआ है।

ऑन और एक कोर्ट में बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक स्कूल में एक क्लास --

जहाँ एक ब्लू कलर के बोर्ड पर कार वर्क शॉप --

स्टेशनरी की शॉप दिख रही है जहां तीन अंकल और एक भाइयों--

यहां पर एक शॉप पर ऊपर एक व्हाइट कलर के बोर्ड से--

यहां पर एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पर एक--

सोफे रखे दिखाई दे रहे हैं यहां एक आदमी--

की मूर्ति का पेंट करा हुआ है जिसके आसपास कुछ--

जीसके अंदर एक आदमी ए_टी_एम कार्ड से पैसे निकल रहे हैं।

पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां मोर की पेंटिंग दीवार पर करी हुई दिखाई दे रही है।